यहाँ पर एक किले की छत से फोटो ली गयी है इसलिए किले का भी थोड़ा हिस्सा नजर आ रहा है जो ग्रे और पीला और पिंक और ब्लैक दिख रहा है यह ईंटे और सीमेंट का बना हुआ है यह उस ज़माने का किला बना हु --

नीचे कोना में कुछ कचरा भी है जो प्लास्टिक का कचरा है नीचे का जमीन जो है वो ग्रे कलर की दिख रहा है जो की कच्ची है।

यहाँ पर छोटे-छोटे गमलो में काफी सारे पौधे लगे हुए है उनमें कुछ पौधों में फ्लावर्स भी है जो रेड कलर के है।

यहाँ पर हरे रंग के पेड़ है जिनके पत्ते दिख रहे है और यहाँ पर दिन के उजाले की रौशनी भी आ रही है यह दरवाजा जो है वो अभी बंद है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेट है और इसमें ग्रिल लगा हुआ है जो की ग्रिल खुला हुआ है अंदर जाने का रास्ता है यह सड़क है और सा रास्ते के दोनों तरफ से छोटे-छोटे पौधे है जो की कटिंग किये हुए पौधे है।